ये किसी खेत का दृश्य है दूर वहां पहाड़ नजर आ रही हैं केले के पेड़ नजर आ रहे हैं।

नीम का पेड़ नजर आ रहा है धान की खेती नजर आ रही हैं दो खेतो के बीच से एक मेड गई हुई है।

ये एक पार्क का फोटो है जहां गाड़ी पार्किंग मे रखी हुई हैं ये गाड़ी वो-- ग्रे कलर की है।

तराजू का छोटा सा हिस्सा हमें दिख रहा है सामने एक स्टूल रखा हुआ है इसकी दीवारें मे टाइल्स लगी हुई हैं बहुत सारी मछलियां पड़ी हुई हैं एक तार है।

जो पिंजड़े के अंदर बंद है| उनकी एक ट्रे है जिसमें उन्हें खाना दिया जाता है| एक मनुष्य उन्हें देख रहा है जिसने ऐनक पेहेन रखी है।

ये एक गोशाला का है जहाँ काले रंग की गाय है और ये की इसके गले में सफ़ेद कलर की रस्सी पड़ी हुई है।

सॉस रखे हुए हैं पीनट बटर रखा हुआ है कैडबरी डैरी मिल्क का डिब्बा रखा हुआ है जूस रखे हुए हैं।